कोई चीज का फंक्शन या प्रोग्राम चल ले रहा है एक दम बड़ा सारा पेड़ दिख ले रहा है साथ में साला सब का सब घर में या शायद घर में घर या प्रोग्राम चल ले रहा है पता नहीं या शायद यहाँ कुछ हो तो रहा है बट यहाँ पे सारा तार -वार हमें दिख रहा है। इसमें एक मंदिर टाइप का दिख रहा है|

ये हमें जो लगरेला है प्लेग्राउंड का सीन है बहुत सारे बच्चे लेडीज लोग आई हुई हैं बहुत सारे झूले-उले लगे हुए हैं आसमान जो सारा नीला-नीला लग रहा हैं।

बहुत सारे दुकान हैं ऊपर में बिल्डिंग है अजन्ता डेरी करके एगो दुकान है जहाँ पे बहुत भीड़ लगि है चाचा अंकल भाई बहन सब हमारे खड़े हैं लेने के लिए |

दिख रहा है सामने पोपुलर होली का दुकान है सकमोनजी टाइप का अंदर मे यहाँ कुछ मुस्लिम का पास मे एक गोदाम है नीला-नीला पूरा गेट है।

स्कूल का सीन दिख रहा है पास में आस-पास पेड़ दिख रहा है सामने पुल दिख रह है जिस जा रहे है सारे सारे रात दिख रहे है यो पेड़ बारे सारे दिख रहे है आसमान जो इनके यहाँ पे है अ ओर उसमें सूरज भी हमे दिख रहा है।